ॐ कार आइसक्रीम प्लाजा फास्टफूड यह एक फास्टफूड दुकान है अन्दर में एक रेस्टोरेंट भी हैं।

पेट्रोल पंप के पीछे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हैं जिसमें रुपा कम्पनी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

और अन्य प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और अन्य प्रकार के हेल्थी प्रोडक्ट भी यहां पर मिलते हैं।

बहुत सारी दवाइयां है जो शीशे से पैक हैं।

और आस पास में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि हरे भरे हैं।

आगे मे खुली खिड़की है पीछे मे खुले खिड़की है। उ से हवा रही है बगल--

यहाँ एक घर है जो की घर में ही एक दुकान भी है।

इसके पीछे एक और घर है जोकि सिर्फ पिलर और ईट से बना हुआ है पूरा कंप्लीट नहीं है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यह एक मोबाइल का दुकान है।

कार बहुत सारी पार्क में आगे में एक पोल भी है।

एक बैनर लगा हुआ है जिसमें सबका प्राइज लिखा हुआ है ।

और तीन चार टेबुल लगे हुए हैं जो कि लाल कलर और ब्ल्यू कलर का हैं उसमें बोतल रखा हुआ है और पानी रखा हुआ है नमक रखा हुआ है।

पानी बहुत साफ है और बड़े बड़े पत्थल भी है पानी में--

हाउस में बैलून से भी सजाया गया है जो कि ब्लू और सफेद कलर का है।

मोटर साईक बाइक लगा हुआ है बगर में। पेट्रोल पंप का स्टाफ जो कि हरा कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं दरवाजा में एक लॉकर बना हुआ है।

बगल में एक नया बिल्डिंग बन रहा है जोकि आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है बहुत बड़े बड़े लाइटिंग हैं यहां पर।

टेंपो है इसमें कई सारे स्टीकर भी लगे हुए हैं यहां पर एक भी आदमी नहीं है।